एंड एक तुवालाय भी है एंड एक जैसे बंधा हुआ है एक माला लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारा लोग है एंड वे सांता क्लोज का टोपी पहन हुआ है।

यहाँ पर दो एक आदमी एक लड़की कर रहा है।

एंड यहाँ पे पोल दिखा रहा है। इलेक्ट्रिकसिटी का एंड यहाँ पे एक ब्ररीज़ दिखा रहा है।

इस बस में खिड़की की खुला हुआ है एंड मिलो के खड़ा है।

एंड यहाँ पे ऑटो दिख रहा है। यहाँ पे अतुल लिखा है। बिल्डिंग दिख रहा है बोहोत सारा एंड घड़ दिख रहा है। एक दुकान दिख रहा है। यहाँ पे लोग खड़ा हुआ है रस्ते में।

दो ह ते हैं। फुल हैं एंड फोटो फ्रेम हैं। मीटर दिख रहा है छोटा सा पेड़ दिख रहा है। साजाने के लिए घर --